और मंदिर भी बहुत अच्छी लग रही है बहुत बड़ी दिख रही है यहां से बगल में एक घर भी है।

और सामने बाइक खड़ी हुई है बहोत सारी यह कोई स्कूल विद्यालय लग रही है।

दो लोग तीन चार लोग आ रहे हैं अंदर भी काफी लोग दिख रहे है।

यहां पे काफी लोग बहुत भीड़ है काफी लोग बैठे हैं खड़े हैं।

खड़ा हुआ है और सामने एक चेयर रखी हुई है।